पेहन रखी है और कुछ बाइक भी खड़ी हुई हैं छत पर एक बल्ब लगा हुआ है।

जिसने वाइट कलर की शर्ट पेहेन रखी है और कंधे पर अंगूछा है इसके पीछे दवाइयों की कुछ शीशी रखी हुई है।

रखा हुआ है इसके पीछे एक लोहे का--

कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं एक डॉक्टर ने--

यह एक नर्सरी है जिसमें--

यहाँ एक लोहे का ट्रांसफार्मर है सामने की तरफ एक--

लगा हुआ है और रोड पर एक व्यक्ति--

लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है चारों तरफ--

ये एक गंदे नाले का वीडियो है यहां पर सामने की तरफ बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

नीले रंग की दरी बिछी हुई है नीचे--

यहाँ बहुत सारे फर्नीचर रखे हुए हैं सामने की तरफ एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है।

सामने की तरफ एक लोहे की सिड्डी खड़ी है।

लोग खड़े हुए हैं वह इस मगरमच्छ को देख रहे हैं।

ये एक मैरिज होम है बीच में सर्कल बना हुआ है।

यह एक ढाबा है सामने काउंटर पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं।

इन्होंने अपने टेबल पर कंप्यूटर चलाओ रखा है।

नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है बाहर की तरफ एक टेम्पो खड़ा है यहां पर --

बोहोत सुंदर डेकोरेशन है गुलाबी रंग के परदो से फूलों से।

जो व्यक्ति खड़ा है उसने लाल रंग की हाफ शर्ट पहन रखी है।

सामने की तरफ एक स्क्रीन वाला बोर्ड लगा हुआ है।

इसके बाहर एक बोर्ड लगा है उसपर कृष्णा हॉस्पिटल लिखा हुआ है बाहर की तरफ एक गाड़ी खड़ी है।

तीन लड़कियां डांस कर रही हैं एक लड़की ने सफेद रंग की--

पीछे वाले व्यक्ति ने अपने कंधे पर लाल रंग का बैग टांगा हुआ है।